ऊपर एक घड़ी भी दिख रही है इस अलमारी पे कुछ सामान रखा हुआ है ये इस साइड में ड्रेसिंग टेबल जैसा बना हुआ है।

उस साइड में और एक गाड़ी दिख रही है जो येलो और ब्लू कलर की है वहां पे बोर्ड भी टंगाया हुआ है जिसपे हिंदी में कुछ लिखा हुआ है।

उस पे एक बोर्ड भी चढ़ाया गया है जिसमें हिंदी में कुछ लिखा गया है वहां मौसम भी बहुत अच्छा है और पीछे से कुछ पेड़ वेड़ दिख रहे हैं।

हिंदी में कुछ लिखा गया है और इन पीलर्स पर लिखा है फायर स्टेशन डिस्ट्रीक्ट ललितपुर।

जिन्होंने एक कलर की वाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और यह ताइक्वांडो यूनिफॉर्म इन्होंने पहनी हुई है इनके सामने एक बच्चा है जो इनको सीख रहा है।

ऊपर व्हाइट कलर का है और वहां पे एक बहुत बड़ा सा पेड़ दिख रहा है यहां पे कुछ लोग भी बैठे है वहां आंगन में अह स्कूटी बाइके वाईके दिख रही है।